यहां बगल में एक ट्रांसफार्मर भी है और उसके बगल में एक पेड़ है।

काफी अच्छा दिख रहा है और बगल में एक पंखा लगा हुआ है जोकि चल नहीं रहा है।

उसके बगल में एक और बड़ा आदमी खड़ा हुआ है और यहां पर काफी दूर भर में पेड़ पेड़ दिख रहे हैं जोकि काफी अच्छे दिख रहे हैं।

ये एक बाल काटने वाला दुकान है और काफी अच्छा दुकान है।

यह एक गाड़ी है जो कि रिपेयरिंग हो रही है और उसका बोनट खुला हुआ है।

एक गाड़ी का बोनट का मुंह खड़ा हुआ है बगल में और एक चक्का जो दिख रहा है जो कि खुला हुआ है।

एक ढलता हुआ सूरज है जो की काफी प्यारा दिख रहा है और काफी अच्छा भी है।

और काफी अच्छा है देखने में मंदिर।

और सामने जय भीम का एक मंदिर है।

काफी सारे छोटे छोटे अलग अलग कलर के फूल है एक नीचे लिफाफा भी रखा हुआ है और बगल में एक बॉक्स भी रखा हुआ है।

यहां पर दो झंडा दिख रहे हैं जो की तिरंगा है।

यहां पर काफी सारे आदमी दिख रहे हैं महिलाएं दिख रही हैं।

बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है जो की अलग अलग कंपनी की है।

और यहां पर काफी अच्छा माहौल है देखने में--

उसके ऊपर लाइटिंग दिख रही हैं जो कि काफी अच्छा है।

यहां पर काफी सारे अच्छे अच्छे चित्र दिख रहे है और पेड़ पौधे दिख रहे है।

यहां पर काफी सारे मार्बल्स हैं जो कि अच्छे चीज हैं।

यहां एक सामने एक मेज दिख रहा है जिस पे कोई आदमी नहीं बैठे हैं।